ऊपर लाइटिंग भी लगी हुई दिखाई दे रही है कैमरा भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

ऊपर बलूंस लगे हुए है ऑरेंज वाइट और ग्रीन कलर के बलूंस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे दो लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे एक वॉल बेसिन है।

खाने की कुछ चीज भी दिखाई दे रही है ऊपर लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक पौधे की नर्सरी है।

सामने दो पेड़ दिखाई दे रहे--

पीछे एक नाव दिखाई दे रही है।

आसपास बहुत सारे पेड़ और पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक विधानसभा का चित्र है।

रेड कलर की पॉलिथीन रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक कार का शोरूम है इस शोरूम के गेट के सामने बहुत सारे बलूंस लगे हुए दिखाई दे रहे जो ब्लैक कलर के व्हाइट कलर और रेड कलर के बलूंस दिखाई दे रहे।

एक बस खड़ी हुई इसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक शादी का स्टेज है।

इन्हों के पास में एक एक गाड़ी खड़ी हुई है।

एक कार साइड में खड़ी हुई दिखाई दे रही है और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर टोपी पहना हुआ दिखाई दे ऊपर लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही।

टेबल के ऊपर दो बुक रखी हुई है।

ये एक पोस्ट ऑफिस है।

सामने सी सीढ़ी दिखाई दे रही है।

ग्रिल भी दिखाई दे रहे हैं।

एक डॉक्टर बैठे हुए हैं जो पेन हाथ में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कंपनी की बिल्डिंग है।

यह एक सब्जी की मंडी है।

और यहां पे एक लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

चेयर के ऊपर बहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां भी पानी बहती हुई दिखाई दे रहे हैं।

अह ग्रीन कलर के छोटे छोटे घास भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।